कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

दरवाजे भी लोहे के बनाए गए हैं।

और इसमें एक बाइक के हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।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

और एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर में कई सारे कुकर और मैक्सी और गैस के चूल्हा दिखाई दे रहा है।

और ढेर सारे बोतल भी दिखाई दे रहा--

इसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और इसमें कई बच्चों ने क्रिसमस के टोपी पहने हुए हैं।

जिस खिड़की का है वह शीशे की बनाए हुए हैं।

और डिजाइन सेम ही प्रकार के हैं।

इस तस्वीर में कई सारे लोग दिखाई दे रहा है।

और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी दिखाई दे रहा--

तुलसी के पौधे दिखाई दे रहा है।

कई सारे सामानें रखी गई हैं।

सामने तस्वीर में एक बड़े से नदी दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर में एक बड़े से गेट दिखाई दे रहा है।

हरे हरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का वस्त्र पहन के बैठे है।